यह एक मॉल की फोटो दिखाई दे रही है।

और साफ सफाई बहोत अच्छी हो रखी है गार्डन की।

और वहां पे पानी फैला हुआ है।